यहाँ पे कपड़ा का बहुत सारा इमेज बना हुआ है।

कई व्यक्ति खड़े हैं और यहां पे पेड़ पौधे हैं।

यहां पे एक बड़ा जैसा मकान है।

और एक पीछे है जोकि वाइट कलर का शर्ट पहना है उसके हाथ में थैली है।

और बहुत सारा लाइट जल रहा है।

उसके हाथ में फोन है।

और बैग है और एक व्यक्ति है।

और पीछे भी एक इमेज बना हुआ है।

पोल हैं जोकि यहां पे बहुत सारा तार इसमें लगा हुआ है।

उसके बगल में एक और रेड कलर का पहनी है और उसका बाल है।

इसका रंग ब्लैक कलर है।

और बहुत अच्छा दृश्य है।

और उसके बगल में पानी दिखाई पड़ रहा है।

और जैसा बना है।

यहां पे एक व्यक्ति हैं वो खड़ा है।

एक व्यक्ति हैदो व्यक्ति खड़ा है।

दुपट्टा है और एक है जो टी-शर्ट पहना है।

और यहां पे लोहे का खिड़की बनाया हुआ है।

और इधर स्कैनर लगा हुआ है।

और यहां पे बहुत छोटा बड़ा--

कुर्सी भी लगा हुआ है।

और उनका जो डटखुन होता है वो बहुत का निकला हुआ है।

और पीछे बहुत सारा सामान रखा है।

यहां पे रेलवे स्टेशन है और ब्रिज बना हुआ है।

बहुत सारा यहां पे हैलोजन मारा है।